जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही सारे काले कलर के बड़े-बड़े टायर रखे हुए हैं और वहीं पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर किसी चीज का प्रोग्राम हो रहा है यहां पर बहोत ही सारे बच्चे खड़े हुए हैं अलग अलग गेट अप में--

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और यहां पर बहुत ही सारे बच्चे खेल रहे हैं और पीछे कुछ घर भी बने हुए हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक पार्क बना हुआ है य पार्क का गेट है और अंदर बहुत ही सारे झूले लगे हुए हैं एक अंकल भी दिख रहे होंगे आपको।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही सारी फूलों की मालाओं की दुकान है यहां पर बहुत ही सारी फूलों की मालाएं टंगी हुई हैं और यहां पर दो लोग भी दिख रहे हैं।

आप देख सकते हैं यहां पर बहोत ही सारी हिरन है और पीछे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं और ये लोग एक लोहे की नेट की जाली के पीछे हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक खेत है और यहां पर बहुत ही सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं नीचे भी हरियाली और लकड़ियों का--

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक सब्जी मंडी है और यहां पर बहुत ही सारी सब्जियां रखी हुई हैं भट्टे बहुत सारे मतलब सब कुछ।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक हॉस्पिटल है और यहां पर बाहर गाड़ियां भी खड़ी हुई है और पेड़ भी लगा हुआ है एक।

आप देख सकते हैं ये एक स्टेशनरी की दुकान है और यहां पर बहोत सारी कॉपी किताबें रखी हुई हैं एक पंखा भी लगा हुआ है यहां पर एक कैमरा भी है।